कोचिंग सेंटर है यह कोचिंग सेंटर में बहुत ही बच्चे यहाँ कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं।

बहुत ही आदमी यहाँ कपड़ा लेने के लिए बहुत दूर-दूर से आते हैं।

यह एक सुधा का दूकान है यह सुधा का दूकान में बहुत ही अच्छा दूध-दही और भी सामान यह दुकान में मिलता है ।

यहां बहुत सारे मूर्तियां बनाये गए है यह मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छा लग रहा है यह श्री नवग्रह शान्ति जैन मंदिर है।

और यहाँ बहुत अच्छे सुंदर-सुंदर प्रोजेक्ट बच्चे लोग बना रहे हैं और प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है।

क्योंकि इससे हमारी कला और कलाकारी बढ़ता है यह बहुत अच्छी बात है।